यह एक गार्डन का दृश्य--

और मंदिर के सामने एक ग्राउंड भी है।

यह एक ग्राउंड का दृश्य है।

इस ग्राउंड में एक जगह ढेर सारा छोटा छोटा पौधा बांधकर रखा हुआ है।

और बिल्डिंग के नीचे ढेर सारे गाड़िया लगे हुए हैं।

और इस स्विमिंग पूल में ढेर सारे लोग भी नहा रहे हैं।

और कहीं कहीं पिलर लगा हुआ है और पीलर का कलर ब्राउन है।

इसके रेलिंग में ब्लैक कलर किया हुआ है।

और ऊपर बॉर्डर में पर्पल किया हुआ है।

इस ग्राउंड में ढेर सारे लड़के लड़कियां हैं और जो की अबीर से खेल रहे हैं।

और ऊपर सीलिंग में व्हाइट पुटी किया हुआ है।

और दूसरी गाड़ी वाइट कलर का है।